इक्लिप्स पर जावा में हेलोवर्ल्ड के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत हैं
इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में एक सामान्यHello Worldहेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखें
इस ट्यूटोरियल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इक्लिप्स 370 और उबंटू 1110 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपके सिस्टम पर इक्लिप्स संस्थापित होना चाहिए
और आपको पता होना चाहिएकि इक्लिप्स में फ़ाइल तैयार सेव और रन कैसे करें
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया दिखाई गए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
यहाँ जावा कोड की एक लाइन है जो हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करती है
अब इसकी इक्लिप्स पर कोशिश करें
Alt F2 दबाएं और डायलॉग बॉक्स में इक्लिप्स टाइप करें और एंटर दबाएं
वर्कस्पेस में ओक पर क्लिक करें और यहाँ हमारे पास इक्लिप्स इडे है
अब न्यू प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट जोड़ें
फाइल न्यू पर क्लिक करें और प्रोजेक्ट चुनें
प्रोजेक्ट की सूची में जावा प्रोजेक्ट चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें
प्रोजेक्ट नेम में डेमोप्रोजेक्ट टाइप करें कृपया ध्यान दें कि डेमो और प्रोजेक्ट में स्पेस न हो डी और प कैपिटल लेटर्स में हों विजार्ड्स के ठीक नीचे दाएँ कोने में पर फिनिश पर क्लिक करें
डेमोप्रोजेक्ट तैयार हो गया है
अब प्रोजेक्ट में न्यू क्लास जोड़ें
प्रोजेक्ट न्यू पर दाय़ाँ क्लिक करें क्लास चुनें
यह एक न्यू जावा क्लास पोर्टलेट खोलता है
क्लास नेम में टाइप करें डेमोप्रोग्राम और मेथोड स्टब्स में किसी एक को चुनें जैसे पब्लिक staticवॉइड मैन
विजार्ड के ठीक नीचे दाएँ कोने में पर फिनिश पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि डेमो प्रोजेक्ट के पास सोर्स डिरेक्टरी और डेमो programजावा नामक एक फाइल है
क्योंकि जावा में हर क्लास की अपनी फाइल होनी चाहिए
इसलिए क्लास डेमो प्रोग्राम केवल डेमो प्रोग्राम
जावा में ही मौजूद हो सकता है
हम देख सकते हैं कि एडिटर के लिए वहाँ बहुत कम जगह है और दृश्य धुंधला दिखता है
अन्य पोर्टलेट्स मिनिमाइज करें और यहाँ हमारे पास एडिटर है
ध्यान दें कि यह लाइन दो स्लैशेस के साथ शुरू होती है अर्थात यह लाइन कमेन्ट है और हमारे कोड के साथ कुछ नहीं करती है
इस लाइन को हटाएँ
इसी तरह प्रत्येक जो स्लैश एस्ट्रिक्स और एस्ट्रिक्स स्लैश के बीच है वह भी कमेन्ट है
अतः ये कमेन्ट्स भी हटाएँ
यहाँ हमारे पास कोड का बारे बोन्स है
अब प्रिंट स्टेटमेंट सिस्टम
ध्यान दें कि इक्लिप्स सभी संभव पूर्तियों की सूची देता है
अभी के लिए हम स्वयं कमांड टाइप करने जा रहे हैं outप्रिंटलन ब्रैकेट्स में क्वोट्स में टाइप करें हेलोवर्ल्ड जावा में हर स्टेटमेंट एक सेमीकॉलन पर समाप्त होना चाहिए
तो सेमीकॉलन जोड़ें
यहाँ जावा में ये पूर्ण हेलोवर्ल्ड प्रोग्राम हैं
सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएं
दायाँ क्लिक करें रुन एएस जावा एप्लिकेशन
कोड रन करें
जैसे कि हम आउटपुट कंसोल पर देख सकते हैं हेलोवर्ल्ड मैसेज प्रिंट हो गया है
अब वर्ल्ड को जावा से बदलें
Ctrl एस के साथ इसे सेव करें और इसे रन करें
जैसे हम देख सकते हैं कि अब जो मैसेज प्रिंट हुआ है हेलो जावा है
अब जानते हैं कि कोड का प्रत्येक भाग क्या करता है160
पहली लाइन दर्शाती है कि क्लास नेम डेमोप्रोग्राम है और यह पल्बिक क्लास है
दूसरी लाइन दर्शाती है कि यह मैन methodमेन मेथड है
दूसरे शब्दों में मेथड जहाँ से जावा में निष्पादन शुरू होता है
जैसा कि हमें पता है यह प्रिंट स्टेटमेंट है
और यहाँ है कि हम जावा में हेलोवर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखें
इसी के साथ हम ट्यूटोरियल समाप्ति पर आ गए है
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि जावा में हेलोवर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखें और जावा कोड में कोड का प्रत्येक भाग क्या करता है
इस ट्यूटोरियल के लिए एक नियत कार्य ग्रीट नामक जावा क्लास बनाएं
निष्पादन के समय प्रोग्राम सफल होना चाहिए
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारें में अधिक जानने के लिए httpspoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contactspoken tutorialorg को लिखे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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है
आईआई टी मुंबई की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आप से विदा लेती हूँ